खिड़की में कांच लगे हुएं हैं।

साड़ियां दिखाई दे रही है एक छत्री भी दिखाई दे रही है।

और पलंग पड़ा हुआ है दो पलंग है और पलंगो पे बेडशीट लगी हुई है।

और दो लाइटे लगी हुई है और एक मकान के ऊपर दो सोलर प्लेटे तीन चार लगी हुई है।

ये एक बहुत बड़ा महल है। इसके ऊपर मुकुटी लगी हुई है। इसके आसपास--

और कुछ लोग अपने सेल्फी ले रहे हैं।